चित्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विश्नु गाजीपुर और गेट आसमान पेड़ सभी है।

इस चित्र में ब्लू टोक्यो कॉफी रिस्टोर रेस्ट होटल सभी हैं।

बहुत सारे घर हैं हरा घास पानी दो लोग बैठे ।

इस चित्र में हम देख रहे है की जिम और जिम में बहुत सारे वेरायटीज आइटम्स है और उधर लाल रंग का पेंट है और लाल और काला रंग का टाइल्स है। एक लड़का जिम कर रहा --

इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सी.यु.बी. ए.टी.एम. और उधर दो आदमी बाहर खड़े हुए। एक आदमी जो अंदर जाके अपना पैसा निकाल रहा है। एक आदमी जो हेलमेट पकड़ के खड़ा है।

इस चित्र में हम देख रहे हैं कि मच्छियों का मार्केट है मतलब उधर जो बोहोत सारे आदमी आ के म् जो जो मछी खरीद रहे हैं और एक औरत अब मछी को देके जो क्लीन कर रही है।

इस चित्र में हम कर्टंस देख रहे हैं। ले कर्टेंस मतलब जो डोर के आते हैं ना वो उसमें तरह तरह के कलर्स के हैं।